इसमें मछली धुल रही है और--

इस पिक्चर में दिखाई देता हैं कि ये पिक्चर शादी वगैरा की हैं पर कोई--

वेडिंग वाला भी बहोत अच्छा है सामने एक लड़का भी है।

इस पिक्चर में दिखाई देता है की ये कुछ स्टेशनरी है क्योंकी बहोत सारी पेन पड़ी हुई है कस्टमर --

अ अच्छा भी दिखाई देता है और सामने बहोत भी ए_सी भी दिखाई दे--

कुछ डी_मार्ट वगैरे सा मेरे को नहीं लग रहा है पर डी_मार्ट जैसे ही ये कुछ सामान दिखाई देते हैं।

इस पिक्चर में दिखाई देता है कि ये कुछ आइसक्रीम वगैरह हैं टमाटर सूप भी मिल रहे हैं।

इस पिक्चर में दिखाई देता है कि एस बी आई ए_टी_एम --

और सामने दुकान भी खड़ी है बाहर डस्टबिन भी खड़ी है एक एक्टिवा भी खड़ी मेरे को दिखाई देती है।